मैं देख प रही हूँ टैक्सी है। लोग एक स्थान से दूसरी स्थान जाने के लिए इसको ट्रैवल करते हैं।

यहाँ पर हर वैरायटी के हर क्वालिटी के हर टाइप के अ जो क्लॉथ्स जो है वो अवेलेबल हैं।

मैं देख पा रही हूं ये एक मंदिर है हमारे जों हिंदू धर्म के जो लोग हैं इस मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। यहाँ हर भगवान --

लोग डेली यूज़ के लिए जो ग्रासिरी की नीड होती है। उसे यहाँ से परचेज करते हैं जोकि बहोत ही आवश्यक है हमारे अ किचन के लिए।

मैं देख पा रही हूँ यह एक बाइक सर्विस सेंटर है। जिसका नाम है एमएस सर्विस सेंटर ।

यहाँ पर लोग अपनी बाइक सर्विस करने के लिए देते है एंड उसे रिपेयर करने के लिए देते हैं।

यहाँ पर बच्चो बड़े हर तरह के लोगों के कपड़े मिलते हैं। हर कलर हर वैराईटी हर क्वालिटी के कपड़े अवैलेबल हैं।

यहाँ पर हर ब्रेंड की सा-साइकिल्स आवेलिबल हैं हीरो होंडा --

एंड ये काफी अच्छी क्वालिटी की साइकिलस मिलती है।

सभी अपने स्टडी करने के लिए आते हैं। बुक्स पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पर।

किसी भी तरह की एण्ड शोर ये कोई भी जगह नहीं --

ये एक यूनिसेक्स सलून है जिसका नाम है स्टाइल यूनिसेक्स सलून ।

यहाँ पर एक स्टेज बना हुआ है जहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पर --

तीन टोरटॉइस तीन कछुए नजर आ रहे हैं।

एक टर्टल इस पटरे पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। ये तीनों आपस में खेलते हुए प्रतीत हो रहे हैं।

बोहोत सारे लोग एंजॉय करते हैं शादी बारातों में --

लेट हो जाती हैं। वो लोग यहाँ पर स्टिकर लेते हैं सो जाते हैं। काफी ऑवर्स वेट करते हैं बेंचेस पर बैठ --

ऊपर काफी पहाड़ ग्रीनरी नजर आ रहा है।

यहाँ पर एक अ पर्सन अपनी पिक्चर क्लिक करवाते हुए --

उल है जिसका नाम है मुमताज मॉडर्न सेकेंडरी स्कूल ।

हम ये भी कह सकते हैं कि एक सरकारी विद्यालय की प्रक्रिया भी हो सकती।

एंड जोकि अ वेडिंग एन्जॉय करते हुए नजर आ रहे हैं।

सामने से इसको फोटो लेते हुए नजर आ रहा।

और उसके किनारे एसबीआई का भी बोर्ड भी नजर आ रहा है।

और शायद अभी बनके बन ही रही है इसकी फोटो ली गई है सामने --

अंदर में लगे हुए है कुछ लोग --